यहाँ पर सभी प्रकार का राशन उपलब्ध है कुछ प्रकार का नमकीन भी उपलब्ध है जैसे की टेढ़े मेढ़े पॉप कॉर्न कुरकुरे तरबूजी के नमकीन--